और फिश दिख रही है वहां पर फ़ुआरे लगे हैं।

एक ट्रक दिख रहा है उसके पीछे--

बोरिंग हो रहा है और दो लोग खड़े हुए हैं उस बोरिंग को खड़े लेकर खड़े हुए हैं।

और बोरिंग का धुआं उड़ रहा है और बादल साफ है।

और दुल्हा भी बैठा हुआ है।

इस चित्र में मुझे एक शराब की दुकान दिखाई दे रही है जो की कोई किसी गांव में स्थित है।

और एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है मटका रखा हुआ--

फिश पॉट में डालने के ये दाने हैं फिश के--

इस फोटो को देख इस फोटो में मुझे एक चीज की दुकान दिख रही है वहां पर साबुन तेल--

हरी मैटी बंधी हुई हैं चैन बंधी हुई हैं।

और पेड़ लगा हुआ हैं बड़ा सा बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ हैं।

यहां बड़ीसी जाली दिखाई दे रही हैं।

वो लगी हुई है और वो कच्चा रोड दिख रहा है।

अं क्रीम कलर के कपड़े पहनी है और वो मैम हैं जो पिंक कलर के कपड़े पहनी हैं।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

और ग्रे कलर के शूज पेहना हुआ है।

और दो पिलर भी लगे हुए हैं और दरवाजा दिखाई दे रहा है जो कि ब्राउन कलर का है।

सब कुछ दिखाई दे रहा हैं इस शॉप पे सब कुछ मिल रहा हैं स्प्रे --

और दो अनार जला रहे हैं जैसे की दिवाली हो।

एक साईकल पे भैया दिख रहे हैं जो कि रेड कलर के टी_शर्ट में--

व्हाइट कलर के प्लेट दिखाई दे रही है एक बोटल दिखाई दे रही है।

जिस रूम में बहोत सारी किताबें रखी हुई--

लैपटॉप रखा है टेबल रखा है लैपटॉप का चार्जर रखा है।

बहुत सारी कॉपी रखी हुई हैं एक खिड़की है खिड़की में से उजाला आ रहा है।

रश्क भी रखे हुए है बहुत सारी चीजें रखी हुई है।

इस फोटो में मुझे एक शॉप दिखाई दे रही हैं जहां पर सोनी टीवी एल_इ_डी रखी हुईं हैं स्पीकर रखे हुएं हैं फ्रिज दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे मुझे बहोत सजावटे दिख रही है जहां पर फ्लावर भी लगे हुए हैं। लाइट भी दिख रही है।

और बहोत सारे लाइट लगी हुई है वहां पे बैलून भी लगे हुए है।

और खाना भी अच्छा दिख रहा है बहोत सारी डिशेस लगी हुई है।